इमेज में हमें वापिस एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोहे के अ अ कुछ एक्सरसाइज करने की मशीनस वगैरा है जो की--

दिखने को मिलता है एक व्हाइट हॉल और जहाँ पर टेबल रैक्स लगे हुए है जहाँ पे हमें अरेंज फॉर्म में अ चेयर्स लगे हुए दिख रही है जोकि ब्लैक कलर से है ऑरेंज कलर के स्टिकर्स लगे हुए जिनके ऊपर --

जो की अरैन्ज फ़ोम मे है और जो की पत्थर ररर--

और साइड में उसके एक बिल्डिंग है जोकि सिमेन्ट की बनी हुई है उसमें भी कुछ अरेंज फ़ोम में अ प्रोडक्ट्स रखे हुए है अरेंज करकर अच्छे से --

और वहाँ पर ग्लास के विंडोस बने हुए है नीचे शेड लगा हुआ है पूरे टीन का आगे तक काफी--